आप ये जो देख रहे हैं ये इंडिगो एयरलाइंस की फोटो है स्टाफ यहां पे --

आप ये जो देख रहे हैं एक बहोत ही अच्छे जिम फोटो है ये--

क्योंकि हमारे बीकानेर में स्थित है बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेंड और क्लीन जिम --

जो भी चाहिए होता है वो आपको यहां पर रीजनेबल प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते --

दोस्तों अभी जो देख रहे हैं ये एक कॉलेज ।

मतलब एक कैफे हैं जो बाहोंत हि ज्यादा एलिगेंट लुक के साथ साथ आपको बहोत हि ज्यादा अच्छा --

दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये पंच सती सर्किल कि फोटो है और जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं की --